बने हुए दिखाई दे रहे हैं इधर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर पेड़ पौधे लगाए गए है साम--

मुझे इस फोटो में सामने एक मार्केट बना हुआ जैसे मार्केट --

कुर्सियां ऊर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं सामने की तरफ कुर्सियों ऊर्सियां रखी हुए दिखाई दे रही --

ढेर सारी गाड़ी मोटर खड़ी हुई दिखाई दे रही हरे भरे पेड़ पौधे दोपहर के समय दिखाई दिया--

कांच के गेट लगाए हैं सामने की ओर दिखाई दे रहे

मुझे इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे--

मुझे इस फोटो में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे र--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे नदियाँ भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक तलाब बहोत बड़ा तलाब बना हुआ जिस तलाब में पानी भरा हुआ दिखाई दे--

लोहे का खम्मा लगा हुआ दिखेगा वायरिंग की गई मंदिर पोता हुआ दिखाई दे रहा सामने की ओ--

मुझे इस फोटो के सामने कोई भगवान का मंदिर बना हुआ है जिस भगवान के मंदिर में कई सारे भगवान की मूर्तियां बैठी हुई दिखाई दे रही है।

डॉक्टर डॉक्टर की शॉप दिखाई दे रही है ऊपर की ओर व्हाइट कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है सामने--

इसी के साथ टॉर्च आर्च लगी हुई दिखाई दे रही है इसके साथ टॉर्च लगाई गई हैं सामने की ओर--

इसके सामने की ओर सामने की ओर कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे ऊपर की आसमान व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा।

के हिसाब के हरे भरे पेड़ पौधे लगाए दे रहे रात के समय हरि भरी घास पूस लगी दिखाई दे रही है सामने से झूले वूले गड़े दिखाई दे रहे हैं।

इतने सारे नीचे की तरफ टेबलें मतलब कि दिखाई दे रही है सामने।

कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर ऊपर की ओर व्हाइट कलर से पोटा हुआ दिखाई व्हाइट कलर की लाइट व्हाइट कलर --

खड़े होने पे इनको लगा एक आपके सामने की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है।